पर्दे दिखाई दे रहे है तीन बच्चे दिक् रहे है सफेद कलर के कपडे पहेने उपर पीले कलर के गुलाबी कलर के और नीले कलर के और वो योगा कर रहे हैं।